अ औरतों ने ब्लू साड़ी पहना हुआ है।

इस तस्वीर में कबड़ जैसा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है ।

यह तस्वीर एक दुकान की है जहाँ पे लिखा हुआ है अमूल मिल्क --

जो नीले रंग का और सफेद रंग का है । अंदर भी कुछ अ सजावट का सामान --

यह तस्वीर एक गेस्ट हाउस जैसे दिखाई दे रही है।

और बाइक भी दिखाई दे रही है रोड के किनारे-किनारे --

यह तस्वीर एक अ दूध की दुकान है जहां पे लिखा हुआ है राज फ्रेश दूध |

जो वाइट कलर का है और पिंक कलर का है और गेट उसका काफी खूबसूरत लग रहा है।

एक ब्लू कलर का शीशा दिखाई दे रहा है।

और फेविकोल दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक कार सर्विस की है।

और कुछ वर्कर भी वहां पर खड़े हुए हैं जिनका ड्रेस काले रंग का --

सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है। उसमें कुछ खिड़कियां दिखाई दे रही है।

सोफा दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का बना हुआ है और पीछे उसके डिजाइन बनी गई है ।